इसमें छोटी बड़ी बहोत सारी फिशेस रखी हुई है।

और यहाँ पर एक बैनर लगा है जहाँ पर मक्कार फिश पॉइंट एंड चिकन पॉइंट लिखा हुआ है।

ऑरेंज भी है और डार्क ऑरेंज भी है।

दारी की गयी है और दीवारों पे भी पोधो की चित्रकारी भी है।

मंगल लिखा हुआ हैं और ऊसपे उस्का कॉन्टॅक्ट नंबर लिखा हुआ हैं गाडी के उपर और सोनाल लिखा हुआ हैं।

यह एक वेजीटेरियन शॉप है यहां पर काफी सारा सामान रखा हुआ है यह सामने मिर्ची है फूलगोभी है।

उसीके पास में दो ऍक्टिवा खडी हुई हैं गोल्डन और व्हाईट कलर की और उसीके उपर एक विंडो ही हैं और ओपन ही --

सामने एक हरे कलर का मकान दिख रहा है उसी के पास से ऑरेंज कलर --

ये एक व्हाईट कलर की बहुत ही सुन्दर ईमारत है इसके पास में यलो कलर की दीवार दिख रही है नीचे इस ईमारत के जो दीवार है वो--

ये स्टेप्स दिये गये हैं और आसपास ग्रीन कलर की बारीक बारीक घास हैं जो बॉउंडरी बॉल में अच्छी लग रही हैं --

ये एक शॉप है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बंसल एंड कंपनी और इसके अंदर शायद--

कॉम लिखा हुआ है अन्जियो कलर का आशियेन पेंट्स की है ये शॉप --

और इस स्पून्स हैं और रॅपर बघेरा ही और पता नही ये क्या हैं उनका नाम --

और जी सामने जाली लगी हुई है बहुत बड़ी सारी और उसके पीछे पेड़ लगे हुए हैं बड़े-बड़े। अंदर भी कहासी कहासी बहुत सारी--

यह एक नर्सरी है इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास बहोत सारे अलग अलग वैरायटी के फूल रखे हुए हैं।

और ये एक व्यक्ती खडा हुआ हैं जो फिशीस का भाव बता राहा हैं और यहाँ पार तीन चार बल्ब लटके हुए हैं --

और अरबी में तमातिम कहते है और ये एक जालीदार बकेट के अंदर रखे हुए है ।

ये एक सड़क दिख रही है सड़क के आस पास ज़ेबरा --

की पिक्चर लगाई गयी है जेसे की ये दो मसुडो की पिक्चर हैं दातो की पिक्चर है।

और बटरफ्लाई वगैरह और ए बी सी डी लिखा हुआ है और बच्चों को बैठने के लिए चेयर दी गई और चेयर्स सब कलरफुल हैं।

और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ थ्रेशर पडा हुआ है जिससे खेत को बोया जाता है।

ब्लैक कलर से इसकी फुटिंग कि गयी हैं ऊपर पूरी डिटेल दी गयी हैं कोनसा रोड कहा जा रहा हैं।

ये किसी शॉप की ओपनिंग है इसलिए इसको काफी अच्छा सजाया गया है।

और ये ऑरेंज और ब्लू कलर की बलून्स हैं और व्हाईट कलर की से सजा हुआ हैं और साथ ही में स्वागत लिखा हुआ हैं --

क्योंकि अगर ये पार्किंग एरिया होता तो लोग ऐसे आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ ना लगाते और यहाँ पर एक ए_ टी_ एम_ भी दिख रहा है।

ये एक पार्क का व्यू है और यहा पर लिखा है मेक्स पार--

ये एक कुडू अरु अ गुर कुड़ है और इसकी ग्रीन कलर की दीवार है और उसपे काले कलर के नज़र ना लगे उसकेलिये मु--

लगा रखा है और पास में ब्लू कलर की तिन शेडो से कुछ बना हुआ है इमारत--

यह एक पेंट की बाल्टियां रखी है और यह एशियन पेंट्स है और देसी घी की बौटले है।

बाल्टी है और यहाँ पे कलर बना के दिए जाते है और यहाँ छोटे बड़े बोहोत सारे डब्बे रखे है।

सामने काउंटर दिख रहा है उसपे लिखा है हंगरी पॉइंट और उसपे खाने का साम--

तो ये सोडा शॉप सेंटर है और इसके अन्दर रेड कलर की है और इसमें नीम्बू बने हुए हैं।

पास में एक बाइक खड़ी हुई है और दूसरी साइड एक सीमेंटेड रोड है।

इस चित्र के अंदर हमें तीन व्यक्ति दिख रहे हैं और यह म मई में आई हेल्प यू लिखा हुआ है और यह कोई होसिप्टल का चित्र लगा हुआ है।

यहां फर्श है और आसपास काफी अच्छी चीजे--